यहां पे उनके ऊपर पन्नी भी लगी है।

एनर्जी है और एक तरफ--

यहां पे बेक एंड ब्यूटी सैलून --

फूलों की माला से सजाया गया--

सारे लोग बैठे हुए हैं।

आगे की तरफ एक बड़ा सा ट्री है।

यहां पर एक ब्राउन कलर की पेपर --

ये एक पेट्रोल पंप की तस्वीर है।

यह साइकिल का कलर रेड है इसके पीछे भी--

काफी सारे लोग अंदर की तरफ--

इसका नाम है बी_ओ_एस_एच सर्विस ।